और यहां पर हमें टी_वी भी दिखाई दे रही है।

यहां यहां पर नट वगैरह ठीक कर रहे हैं।

और हमें यहां पर एक बहोत बड़ा पोल दिखाई दे रहा है।

यहां पर पानी डाला हुआ है।